मुझे यहाँ एक डेरी फार्म फार्म दिखाई दे रहा है इसका इस डेरी का नाम है श्रीं गणेश डेरी फार्म है।

मुझे यहाँ पे कार वॉशिंग का एरिया लग रहा हैं जहाँ पे बहोत सारे कार वैन भाई अ--

यह कोई बड़ा-सा इंजीनियरिंग विभाग का कुछ मतलब फैक्ट्रीज है जहाँ पे बहोत सारे मशीन लगा है।

यहाँ पर एक तीन टंकी दिख रही है मुझे और बहुत सारे स्टोर रूम और कुछ ऑफिस और कुछ अच्छे से बाउंड्री के साथ बना हुआ है।

यह एक बड़ा-सा नदी दिखाई दे रहा है जिसमें का एकदम व्यू बहोत अच्छा दिख रहा है एकदम--

अलग-अलग कलर्स के वाइट ब्लू बैगनी ब्लैक डार्क ब्लू ये सब कब कलर के कपड़े रखे हुए दिख--

घर बन रहा है जिसका ऊपर वाला जो छत है उस की ढलाई हो रही है उस के लिए रल बहुत सारे प्लेट और पाईप की मदद से इस को फिट किया गया है ढलाई के लिए दाल दिय गए है।

गैरेज मे पड़ी हुई एक पुरानी कार नज़र आ रही है जो रिपेइरिंग स्थिति में है शायद इसके इंजन पार्ट को खोले गए है पीछे भी बै बोनट वगैरा को शायद खोले हुए है।

मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहोत सारे पेड़ घास पत्ते पौधे दिखाई दे रहे है जहाँ पर कुछ कुछ लोग टहलने घूमने के लिए गार्डन में आए हुए है।

मुझे एक पेटिटेड़ेर्स पेटिटेड़ेर्स बोलने एक सब्जी बाज़ार मतलब रोड पे एक सब्जी कोई भी दुकाने लगती है उसको पेटिटेडर बोलते है एक सब्जी का पेटिटेडर--

दुकान मिली हुई है जहाँ पर नीबू धनिया मिर्च टमाटरआलू केला बगेरा ये सब ये सब्जी बाज़ार मे बेचते--

एक लड़के का फोटो है भद्दा सा फोटो दिख रहा है ज्यादा उम्र का लड़का है जिम में--